यहां पे बहुत सारे आदमी है कपड़े बेक रहे हैं।

ये यहां पे देख सकते हो ये दो पहाड़ दिख रहे हैं।